कुछ लोग दुकान मे बुक देख रहे हैं और दो पंखे लगे हैं।

और कुछ घर में नज़र आ रहे हैं पेड़-पौधे नज़र आ रहे हैं कुछ घास--

और टेबल है चेयर है टेबल के ऊपर ग्लास नज़र आ रहे है कुछ प्लेट रखे हुए है।